पेड़ और हरी का घास दिख रही है ऊपर नीला सफेद आसमान दिख रहा है और दूर कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख रही हैं।

रखे हुए हैं और साइड में कुछ लेंगे ऊपर टनी है जो नीला सफेद और पिंक --

यहां पे देख पा रहे हैं एक घर है।

और कुछ मोटरसाइकिल दिख रही है सड़क पर कुछ आदमी दिख रहे हैं ऊपर काला आसमान--

नीला है वो सामने साइड में एक आदमी खड़ा है और पीछे दीवार पर एक--

और कुछ फोटो दिख रही है साइड में कुछ क्रीम की डब्बी रखी हुई है।

बहुत सारे पाइप और नीचे खंबे लगे हुए हैं नीचे साइड में ग्रीन चटाई--

कलर की है जिसमें बहुत सारी लाइट दिख रही है।

ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसमें ऊपर इंग्लिश से और नीचे हिंदी में--

दोनों साइड ऊपर नीचे पीले कलर के टाल्स लगे हुए हैं और दोनों साइड सफेद टाई--

दिख रही है नीचे दो बाल्टी रखी हुई है और एक आदमी--

यहां पे देख पा रहे हैं बड़ा सा होल है जिसमें बहुत सारे चैम्बर --

सफेद मोंगरे की फूल की वो नीचे उसमे --

हरी कलर की लाइट दिख रही है। ऊपर काला आसमान दिख रहा है और सामने दो--

आदमी दिख रहा है और पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे देख पा रहे हैं सड़क हे जिस पर कुछ साइकिल --